और बगल में पेड़ों की हरी-भरी ग्राउंड दिखाई दे रही है ये पानी भी दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है यह बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है।

यह्ह्ह यहां चार-पांच बंदे दिखाई दे रहे है जो बोरा मे पता नही क्या लेके जा रहे है बगल में दो-तीन साइकिल भी है एक बन तीन दो बंदे ने टोपी और मास्क तीन-चार बंदे ने लगा के रखी है जो एक ठेला मे बोरे सब लाधा के कही लेके जा--